यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग के सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है |

ई रिक्शे के बगल मे कुछ घर भी दिखाई दे रहे --

यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में एक री एक इ-रिक्शा खड़ा किया गया है।

बने हुए हैं सामने श्री गणेश लिखा हुआ है

रोड के किनारे कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बाजा बजा रहे हैं।